यहाँ पर एक बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा है यह जंगल बहुत बड़ा है।

इहु हूँ इहु हूँ बहुत बड़े-बड़े पहाड़ है यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है यहाँ पर छोटे पौधे लगे हुए है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं बड़े-बड़े पेड़ों के साथ यहाँ पर--

यहाँ पर एक ठेला खड़ा हुआ है ठेले पर एक आदमी कुछ बेच रहा है यहाँ उसके ठेले पे--

यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है नदी का पानी बोहत गंदा है नदी के आस-पास एक जंगल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा जंगल मे बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है यहाँ पर हरी-भरी घास उगी हुई है।

ये एक जंगल का हिस्सा है यहाँ पर बोहत बड़े -बड़े पेड़ लगे हुए थे जिन्हे काट दिया गया है यहाँ पर सुखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है जंगल में बहुत ऊंचे-ऊंचे बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।